इस बाग में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं जोकि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

इसमे बहोत इसने कोई काम मजदूरी कर रहा है जैसे ईंटे छानना रेता छानना।

इसमें दो चार बच्चे नहा रहे हैं सामने सूर्य उदय सूर्य में डूब रहा है जो की देखने में बहोत ही अच्छा नजारा है।

बच्चे अपने आप पेरेंट्स के साथ स्कूल में आए हैं और स्कूल के गेट के आगे खड़े हैं।

यह हेलमट देखने में बहोत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं।

चढ़ाई करना बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं।

ई तस्वीर में हम देख सकते है कि यह एक रिसेप्शन है जो की पेय डाल--

अच्छे लग रहे हैं जो की बहुत सुंदर और आकर्षक लग रहे--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक अंडरवियर की शॉप है जिसमें बहुत सारे अंडरवियर के डब्बे रखे हुए--

इन डब्बों में बहुत अच्छे क्वालिटी के अंडरवेयर है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे और पेहनने में बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक फिश मार्केट है यहां पर बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई है।

इस मॉल में एक स्टैचू है जोकि देखने में बहोत ही अद्भुत और सुंदर लग रहा है इस मॉल की लाइटिंग इतनी की बहोत ही अच्छी और सुंदर लग --